यह एक मोटर इलेक्ट्रीशियन --

अदा करते हैं और जुम्मे के दिन यहां पे बहुत भीड़ भाड़ होती है। यह एक मजार भी है और बराबर में एक नवा मकान बन रहा है और एक पेड़ भी है और यह जुम्मे --

ये दिन यहां पे बहोत भीड़ होती है यह मुसलमानो की एक--

था टावर चमक रहा है कुछ सामने पे पंछी उड़ रहे है यहां पर एक पतंग उड़ रही है यहां पे कुछ पेड़ है और यहां पर कुछ मकान से मकान है।

हां पर कुछ बाइकें खड़ी है जिसमें एक स्कूटरी है और दो तीन बाइकें हैं और दो तीन भीतर भी बाइक हैं और स्कूटी भी कितनी सारी खड़ी हैं।

यहां पर एक किसी ने दुकान खोली है और शॉप ओपन --

वो बूढ़े आदमी बैठी है तीन चार लोग खड़े है।

जिसमें से यह ढूंढ-ढूंढ कर आराम से जड़ी बूटी बना सकता है और वह इनमें से --

और उस मकान पे सफेद रंग हो रहा है।

जिनमें शीशे कांच के लगे हुए हैं।

एक पाइप है एक पिछे गेट है।

और ऊपर में लाइट लग रही है और यहां पर एक लैपटॉप रखा है और यहां पर टेंट लगा रहा है।

और बराबर में एक स्टाफ रूम भी है जिसके बाहर कुर्सी पड़ी हुई है और बच्चों के खेलने का स्टेडियम भी है।

और यहां पर एक पेड़ हरा लगा हुआ है और ऊपर में कुछ बल्ब भी लगे हुए जो जल नही रहे हैं।

यहाँ एक पतंजलि की दुकान है जिस पर दवाईयां बिकी हुई है और किसी ने यह दुकान नवी नवी खरीदी है।

हम यहां पे जाकर अच्छी तरह घूम सकते हैं सुबह सुबह।

और बराबर में बहुत सारी गाड़ी खड़ी है जिसका एक का नंबर है।

यहां पर एक दुकान है दुकान में दो तीन फ्रिज रखें हुए हैं और यहां पर दो स्टूल बैठने के रखे हुए हैं एक स्टूल पर--

उपर आसमान में बादल है औऱ सामने पे कुछ पहाड़ हैं और उन पहाड़ो पर पौधे हैं।

यहां पे एक रेस्टोडेंट है।

यह एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है जिसमें डॉक्टर की दुकान यह पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और यहां पे इसलिए भीड़ हो रही है।

तो बराबर में बहोत अच्छा इवेन नेशनल हाईवे है।

यहां एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में घड़ी है और उसके हाथ में एक किताब भी है और उसने जींस पहन रखे हैं और पीछे में कितने सारे खन्ने बने हुए --

पट्टे भी रखें हुए हैं और यहां पर कुछ बोरिया भी रखी हुई है सामने पर सामान रखा हुआ है जो डिब्बों में गला हुआ है।

और एक उपर पे बोर्ड लग रहा है और यहां पर कुछ पन्नियों में टंग रहा है।

यहां पर बहुत सारे तोते रखे हुए हैं यही पे बिकने के लिए हैं व बराबर में बहुत सारी--

चार ए_सी के डब्बे हैं।

आगे बड़े पेड़ है पीछे एक मकान है।